यहाँ पे ज्यादातर पुरुष ही नजर आ रहे हैं। कोई भी महिला --

इन्हे नज़र आ रही है और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। लोग यहाँ स्विमिंग पूल में भी जा रहे हैं।

यह एक वेडिंग हॉल है जहाँ पर बोहोत ही अच्छा सज़ावट किया गया है और सोफा भी --

यह एक कारखाना है। कारखाना बहोत ही बड़ा है और सामानो से भड़ा है।

अनार शरीफा मौसम्बी चीकू इत्यादि हैं।

जल से भरा हुआ है और उसके आस- पास किनारे में घने-घने --

यहाँ रास्ते में एक व्यक्ति एक ठेला लगा कर के भोजन --

खिलाड़ी यहाँ मैंदान में एक्रत्रित हो चुके हैं खेलने के लिए और मैंदान को बहोत ही अच्छे तरीक़े से सज़ा दिया गया है।

यह एक हौंडा का शोरूम है। यहाँ पर हौंडा का बाइक मिलता है। यह शोरूम --

यह एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे एक लड़की स्लाइडिंग में झूला झूलते हुए दिखाई दे रही है।

और यह दुकान सड़क पर ही पड़ती है और सड़क के नजदीक ही --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

यह एक बुक की दूकान है। जिसका नाम है वेदांता बुक वर्ल्ड --

तब महिलाए हाथ जोड़कर के यहाँ पे पूजा स्थल पे बैठी हुई है।

यह एक शोरूम है। यह मिडलैंड शूज का शोरूम है।